चित्र किसी तलाब का है जोकि सामने तलाब मे से दो मगर मच्छ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे है और तलाब मे जो पानी है वो भुत ही गंदा दिखाई दे रहा है और मगर मच्छ तालाब से बाहर आ गये है।

चिन्ह दिखा है। जोकि सामने नदी मे कुछ महिलाए नहाती हुई दिखाई दे रही है। जोबी कुछ पुंजा पाठ कर रही है। और नदी के दूसरी तरफ कुछ पुरुष बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यह चित्र किसी फैक्टरी का है क्यूकी सामने एक बहुत बड़ी फेक्टरी का शेड दिखाई रहा है जिसमे बहुत सारे लाइटे जल रही है और एक आदमी सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर दुकान का है जोकि सामने सुपर मार्केट लिखा हुआ है और उसके बाहर कुछ आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे है कुछ मोटर सायकल भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

ये चित्र किसी घर के उपर छत का हैं कुछ महिला योगा करते हुए दिखाई दे रही हैं और सुबह-सुबह का समय हैं और सूरज सामने उगता हुआ आसमान मैं दिखाई दे रहा हैं।

चित्र किसी जागरण का है जोकि सामने बहोत सारे देवी देवताओ की फोटो लगाई हुई दिखाई दे रही है और कुच्छ आदमी नीचे बैठे हुए है जोकि पुजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे है।

ये चित्र किसी कम के उपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमे कुछ कर्मचारी मिलकर अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे है और आसपास बड़े बड़े पेड पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यह चित्र किसी बहुत बड़ी नदी का है जोकि सामने नदी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नाव दिखाई दे रही है जिसमे कुछ पुरुष और महिलाए बैठी हुई है और आस पास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।